और यहां पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

में पत्ते और घास--

आटा रखे हुए हैं और--

इस पिक्चर में हमें दिख रहा है।

मंदिर दिख रहा है और--

फोटो में नजर आ रहा है यहां पर एक बहुत बड़ी--